यह एक कॉलेज है और यहां पर प्रेयर हो रही है।

और उसके बराबर में एक गेट भी लगा हुआ है।

यह एक ऊंची मीनार नजर आ रही है।

और यहां पर एक लेडिस सामने स्क्रीन पर खड़ी हुई है।

इस खेत में काफी सारे पेड़ लगे हुए हैं।

और रोड पर एक बहोत बड़ा पोस्ट जिस पर गोल्डन फैमिली शॉपिंग लिखा हुआ है।

यहां पर एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

और यहां पर दो नीले रंग की कुर्सी भी रखी हुई है।

यहां पर फर्नीचर रखा हुआ है।

और यहां पर लकड़ी का सामान बनता है।

यहां पर तो बोहोत सारे बच्चे भी है और आदमी भी है महिलाएं भी है।

यहां पर एक पीजे की पेंटिंग लगी हुई है और साइड मे काफी सारी पेंटिंग्स लगी हुई है।

एक शीशे का गेट भी लगा हुआ है और जहां पर नीचे दो लड़के भी खड़े हुए हैं।

यहां पर काफी सारे आदमी टूरिस्ट घूमने आ रहे हैं।

इस घर के बाहर एक कार भी खड़ी हुई है।

कार के पास एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और यहां पर काफी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

और सामने स्क्रीन पर काफी दूर कुछ बस वगैरह भी नजर आ रही है।

इस दुकान में कुछ सामान कैरेट में रखा हुआ है।